सामने हमे एक रोड दिखाई दे रहा है जहाँ पे कई सारे चल रहे और कुछ लोग बैठे हुए है और आसपास कई सारे गाड़ियां चल रही है और आसपास स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है|

सामने हमी एक नदी दिखाई दे रही हे जहा पर एक आदमी नीचे क्योर पत्तरोंमे बैट हुआ हे और ऊपर से झलन गिरा हे और आस पास हमें के सर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही हे।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

पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे की और कुछ छोटे-बड़े पत्थर के पड़े हुए हैं।

इसके ऊपर छोटे-छोटे घास भी हुए हैं पास ही में एक खंभा भी लगा हुआ है और आसपास में कई सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

कई सारे झूले बने हुए हैं जो की बहुत ही सुंदर लग रहे हैं स्विमिंग पूल के बाहर दो खंभे भी लगे हुए हैं और आस-पास हमे कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।